केला है अंगूर है एप्पल है।

और बाहर एक रोड है यहाँ बहोत सारे पेड़ और --

यहाँ साइकल का शोरूम है बोहोत बड़ा। यहाँ पे बोत --

और बगीचे में झूला बनाया हुआ है पीले रंग का। यहाँ बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

चंचला लिखा हुआ है लाल रंग से।

यहाँ फुटपाथ पे गाड़ी और बाइके खड़ी है और सामने एक--

और पीछे एक फैक्ट्री है उसमें लाइट लगी हुई है एक गेट है लोखंड का --

यहाँ बोहोत सारे लोग खड़े हैं। कुछ लोग फोटो ले रहे हैं।